आरे तोरी के इ ते लगय हेय की--

कतना बढ़िया लग हइ देखे में तनी तनी गो बचवा के कपड़वा ई हरका दे हौ ने छौरी लग हे।

कहियो ना सुधरतई सरकारी जगह ईटा पथल पत्थर ई रंगीन नया नया लगतइ।

एतना बढ़िया आहो बाबू ई त लग हइ की लाल किला नियर बनाय देलकै उजला उजला रंग देलकै खाली |

पानी लेकिन बड़ी साफ है हरा हरा घास है जे बीचवा में न हउ बढ़िया लग हइ देखे में पिछवो है।

उजरो हरिण हेय घासो हेय हरिना खाय हेतो आर घास मे चरे होते।

अलग-अलग हैं इसका जोड़ यह है कि अच्छी चीजें भी दिख रही हैं।

--और गुलदस्ता बना हुआ है पीला रंग का कितना सुन्दर।

लग हइ माल उल खुले रहै की--

ई देखलीं कपड़वेया के शोरूम हइ फूल पेन्ट-शर्ट के कपडा हइ।

आज तो हमें लग हइ की पांच गो मिठाइया खैलिये और बहुते मोटाई थी ।

इते लगई की एगो आदमियां बेठलो लगई की बैंक लगा है बताईं इ ते लगे जब झोपड़ियाँ

इ लग हई की चिकन बिरयानी रहे।